काफी लाइटें लगी है दो आदमी सीढ़ी के नीचे है।

अगल बगल में काफी पहार है झरना का पानी बहुत तीव्र गति से आ रहा है।

ये किसी स्कूल की तस्वीर लग रही है यहां पे गाड़ी पार्किंग लगी हुई है काफी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।

कुछ जो है वकील से भी मिलने आते हैं।

और एक टीना का मकान बना हुआ है वहां पे एक कुर्सी है।

एक लेडिज भी बैठी हुई है दो जेंस बैठे हुए है एक होटल का कर्मचारी है वो सफाई कर रहा है काफी संख्या में बैलून लगी हुई है।

लगता है कि कोई कार्यक्रम हो रहा हैं कुछ समारोह हो रहा हैं जिसमें एक दु एक माने सामूहिक फोटो खिंचाये--

पीछे क्रॉस का निशान है लग रहा है कोई शादी समारोह है या कोई कार्यक्रम चल रहा है कुछ लोग फोटो भी खींच रहे हैं।

अगल बगल में लंबी दूरी तक कोई नहीं है नदी के बगल में कुछ पेड़ लगे हुए हैं।